ये देखिए एयरपोर्ट का जगह है। यहाँ देखिए जहाज खड़ा है और लोग उसमे जा बैठ रहे है और लोग बाहर घूम रहे है। एक ट्रौली भी है।

बड़े मैदान बहुत से है। तीन गाड़ी खड़ी है लोग खड़े हैं और ह एक कंटेनर खड़ा है। इधर भी कंटेनर खड़ा है बस खड़ी है वहाँ जाइए देखिए अच्छे हैं। आ --

बगल मे लोग हैं एक गाड़ी हैं टैंकर हैं टकटर है।

देखिए कितने अच्छी-अच्छी सब फूल का लगा है। अच्छे से सजावटें की है। लाइट भी अच्छा लगा है। जो डिज़ाइन बना अच्छा लगा है। पर्दे की डिजाइन भी अच्छी --